इस चित्र में सामने एक बड़ा सा रूम है।

जिसमें बहुत सारा टायर है और टायर में पीले कलर का स्टीकर साटा हुआ है।

इस चित्र में सामने एक चार दुकान है जिसमें चौथ दुकान में बहुत सारा सीमेंट बड़ा रखा हुआ है।

इस चित्र में सामने बहुत सारा फूल रखा हुआ है जिसका कलर पिंक डार्क ब्लू येलो ऑरेंज है।

और तीन दुकान में बीच वाले दुकान में एक आदमी गेट पर खड़ा है और बैग टांगा हुआ है।

इस चित्र में एक दुकान के अंदर का फोटो है जिसमें सामने एक दिवाल है जो हरा कलर का पेंट किया गया है।

और सामने आदमी का बैठने वाला टेबल है जिसमें व्हाइट और लाल कलर का पेंट किया गया है जिसमें आदमी लोग बैठे हुए है।

और रेक में बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

जिसमे लिखा गया है पनीर रोल चिकन चिली पनीर चिल्ली और अंदर दो आदमी लोग हैं और ऊपर करकट लगाया गया है।

और लेफ्ट साइड एक आदमी खड़ा है।

इस चित्र में सामने एक दुकान है जिसका नाम अरविंद इलेक्ट्रिक वार्कर्स है।

राइट साइड एक दीवार है जिसके पास जिसमें एक प्लाई बोर्ड रखा हुआ है।

इस चित्र में सामने एक बड़ा सा मैदान है।

इसके दीवाल में पीले कलर का पेंट किया गया है और लिखा गया है।

इस चित्र में सामने एक बड़ा सा ग्राउंड है जिसमें टेंट लगाया गया है।

और उसमें लाल कलर का एम_एस लिखा हुआ है।

सामने एक लाल कलर का कपड़ा है।

राइट साइड एक बूढी औरत बैठी हुई है।